बगल में बहुत सारे किराना तथा सभी फल की दुकान भी है। बगल में बहुत सारे किराना तथा सभी फल की दुकान भी है।